इसमें बहोत सारे प्लांट्स रखे--

तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं इस--

टमाटर है और भिंडी भी--

आप इस पिक्चर में देख--

यहां पर एक फोटो है उसमें--

सामान रखा हुआ है।

बच्चे बहोत सुंदर चीज बना रहे--